ये डी डी यु से एफिलिएटेड है।

और ये कॉलेज देखने में कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है ।

ये आ कोंई इको सपोर्ट --

मास्क लगाके लोग घूम टहल रहे हैं।

मैरेज हॉल भी काफ़ी बहुत बड़ा है।

जैसे में दलीप बैठते है बैठते है।

यह मतलब यह कब फ्री हो तो इनका मतलब सेविंग करे हे।

वैसे ही एक चर्च है जो जहां क्रिश्चियन लोग जाते हैं। इस चर्च का नाम है सेंट एंड्रूज चर्ज ।